कार भी दिख रहा ह एक एस_बी_आई का सेवा केंद्र भी --

बहुत सारा चॉकलेट है मिठाई है।

एक बोरा रखा हुआ है इसमें बाहर बहुत डिजाइन का है लाइट भी है इसमें पंखा भी है।

बहोत सारे लोग भी है इसमें स्टूडेंट लोग--

एक बड़ा सा मंदिर दिख रहे हैं जो हर कलर में झंडे टंगे हुए हैं व्हाइट कलर का मंदिर दिख रहे हैं।

और बहोत छोटे छोटे बच्चे है जो डांस कर रहे है इसमें व अच्छे अच्छे डा--